एक आदमी बाइक से जा रहा है नीचे दुकान है ऊपर बड़ी बिल्डिंगे है बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।